ये दृश्य एक रोड का है।

लोग इन सब्जियों को खरीद रहे हैं।

मछली बेच रहे हैं तथा कुछ मनुष्य मछलियां खरीदने आए हैं।

यहां पे एक डेस्क रखा हुआ है।

कुछ आदमी भी दिखाई दे रहे हैं जो की इन पौधों के बारे में बात कर रहे हैं।

ये फोटो एक जंगल का फोटो हैं जिसमें--